इसका रंग सफेद में है तथा नीचे काली रंग की टाइल्से लगी हुई है।

मूर्ती भी दिखाई पड़ रही है एवम् आस पास लोहे की रेलिंग भी नजर आ रहे हैं।

ज़मीन पर टाइलसें भी लगी हुईं हैं।

दो आदमी भी खड़े नजर आ रहे है।

जमीन पर चटाई बिछी हुई है।

यहा एक पहाड़ का चित्र दिखाई दे रहा है जहां से झरना बह रहा है।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

यहां एक रोड का चित्र दिखाई दे रहा है।

इसका खिड़की कांच का है।

यहां बच्चे लोग बेंच पर बैठे प्रोग्राम बना रहे हैं।

लोग उनकी प्रोग्राम देख रहे हैं।

यह एक जलाजोगा रेस्टोरेंट का चित्र दिखाई दे रहा है।

के बाहर दो हरे भरे गमले भी नजर पड़ रहे है।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

यह एक साइकल दुकान का चित्र दिखाई दे रहा है।

हा ढ़ेर सारी सब्जी और फलें रखे हुई है जैसे केला संतरा सेब।